घर के ऊपर बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और घर के अंदर बहुत सारे कुर्सियां दिखाई दे रही है।

ढेरसारे उहह पत्थर है पत्थर मे से झरनो की पानी की लिंक है जो की नदी के तरफ गिर रहे है और बगल मे एक बहुत बड़ा पौधा है।